लेस के पैकेट्स जो है बाहर एक बॉक्स रखा उसमें रखा है और एक फ्रिज है।

पीछे जो है पार्टी चल रही है शादी समरोह है लोग बैठके खाना खा रहे हैं सब मिलके।

खुला हुआ है और वहां पे फूल है वो टांगे हुए हैं।

सामान रखा हुआ है ऊपर फैन लगे हुए--

और बड़े अच्छे से डेकोरेशन की हुई है। बाहर भी लोग खड़े हैं उनकी आरती कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं।